ये लड़का कुछ लोगों को अपने सिक्स पैक दिखा रहा है और चेस्ट दिखा रहा है और पीछे की तरफ एक बंदा जिम जिम कर रहा है और अगल-बगल इसके --

लोग का सेंटर आया हुआ है इस स्कूल पे। इसे कई सारी गाड़ियां खड़ी है कुछ स्कूटी भी है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे देख रहे हैं इधर उधर। काफी बड़ा स्कूल लग रहा है। ऐसा लगता है काफी बड़ा है।

ये एक बुलेट की एजेंसी है जहां पर बुलेट बनाई जाती है और खरीदी भी जाती है।

ये देखिए एक सब्जी की दुकान है जहां पर सब्जी रखी हुई है नींबू रखे हुए हैं धनिया रखा हुआ केला भी रखा हुआ --

देखिए सीडी दिखाई ऊपर के उत्तरफ जा रहे है जिसमे ऊपर रास्ते पहाड़ी के ऊपर चट्टानों के ऊपर किले जहां पर लोग घूमने जाते है।